आलू है। छोटी है। बड़ी है। मिट्टी लगी हुई है।

अस्पताल पे लिखा सदर अस्पताल गोपाल गंज लिखा हुआ है।